लाइटिंगो का कलर गुलाबी सफेद--

हम देख सकते है होटल के ऊपर लाइटिंग भी करी गयी है।

हम देख सकते है यहाँ पे सुनहरे रंग के झूमर भी टँगाए गए नजर आ रहे हैं।